देखिए उधर लेडिस भी है। एक आदमी पानी के बहार निकलने की कोशिश कर रहा है।

और बस के सामने एक आदमी अपने आप की इमेज लेते हुए दिखाई दे रहा है।

बोहोत सारी चेयर है जो आदमी बैठा हुआ हैं।

बलून से डेकोरेटीव है देखने में काफी अच्छा लग रहा है।

ऊपर का देखिए डिजाइन बहुतअच्छा है।

और नीचे देखिये जो मैरून कलर की कालीन है वो भी देखने में काफी खूबसूरत लग रही है।